यह एक लकड़ी की बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है। ये डिजाइन बनाई हुई दिख रही है। यहा बहुत सारी बिल्डिंग बनाई दिख रही है। जो दो बड़े खंबे दिख रहे है। जिस मे बिल्डिंग बनाई दिख रही है।

ऊपर सफ़ेद कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। सामने एक व्यक्ति दिख रहा है जो दो ऊँगली दिखाते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर उसके सर के ऊपर रेड कलर का कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर एक लोगो बना हुआ है जो नीले कलर का दिख रहा है। इसमें कुछ लिखा दिख रहा है। सामने एक--

यह किसी रोड या पूल के निचे का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे एक बाइक कार खड़ी हुई दिख रही है। कुछ रिक्शा खड़ी दिख रही है। रिक्शा का कलर काला और पीला कलर का दिख रहा है। कुछ बच्चे सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। पीछे एक पूल बना हुआ दिख रहा है।

यह किसी स्कूल का फोटो दिख रहा है इसमें एक बेंच दिख रही है। बेंच के ऊपर कुछ शामिल रखा दिख रहा है उसके ऊपर सिज़र और कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ गम की बोतले और कुछ बुक्स रखी दिखाई दे रही है।

ये एक स्कूल का फोटो दिख रहा है इसमें कई सारी बच्चियााँ बैठीं हुई दिखाई दे रही है बच्चियों के हाथ में गम दिखाई दे रहा है कुछ।

एक खुला दिखाई दे रहा है। एक सर खड़े दिख रहे है पीछे वाइट कलर की एक दीवाल दिख रही है।